पिंक कलर की लाइटे लगी हुई है दो लोग सामने में लोहे के चुरा लेकर खड़े है एक आदमी अंदर की ओर जा रहा है अंदर बहोत भीड़ है।

और साइड में बाइक हेलमेट लगा हुआ है और लाइटें पिंक कलर की ऊपर की ओर फ्लैश हो रही है.

एक बड़ा सा पेड़ है पेड़ के पीछे बहुत ही छोटे-छोटे पौधे लगे हैं बाउंड्री बना हुआ है एक बड़ा सा घर है.

लाइटें लगी हुई है छोटे-छोटे पेड़ भी लगे हुए हैं.

वहां पर एक बोर्ड दिया हुआ है और पानी की बोतलें रखी हुई है लाइटें जली हुई है.

ग्रीन रेड येलो और लोहे का बोर्ड भी है और स्विच भी है तार लगी हुई है बोतल भी है पानी पीने--

नदी में एक बोट है जिसमें कुछ लोग सवार हैं पीछे एक लड़का बीच में एक लेडी और--

अ बुजुर्ग लेडी सामने में एक आदमी और दो औरत एक आदमी बैठे हुए सूर्य की किरने--

बहुत ही बड़ा-बड़ा पर्दा लगा हुआ है ये हॉल लग रहा है जहां पर सोफा है.

एक फ्ला फ्लोवर का पोट जिसमें ग्रीन कलर का पौधा भी लगा हुआ है।

सामने कांच का एक टेबल है जिसके ऊपर एक प्लेट में--

एक पैन लगा हुआ है ग्रीन कलर का ग्रास का पोर्ट भी लगा हुआ है ।

और बहुत सारे छोटे-छोटे बॉक्स के और हैंड प्रिंट के बॉक्स भी है बहुत सारा --

का काम किया हुआ है एक सामने में मेन्यू भी रखा हुआ है ।

बिहार का महापर्व झट हो रहा है जहां नदी में बहुत सारी लेडी मांसूरी की आ--

कर रही हाथ जोड़कर और सूप में बहुत सारे फल केल टावर नीमू और नारियल और--

ये विजय पुस्तक भंडार है जहां बहुत सारे पुस्तक है खेलने के लिए कैरेम बोर्ड लगा हुआ है।

बच्चों के खेलने के लिए बैट बॉल रखा हुआ है जो--

शिव जी माता पार्वती और गणेश जी और--

शिव जी के वाहन गाई इनका फोटो और उन पर म माला चढ़ी है ।

और सब परिवार शिव जी के सब में माला चढ़ी है सामने में कुछ सामान रखा है।

स्टेज बना है जहां वरमाला के लिए लड़की के बैठने के लिए सोफा बना है फूल से डेकोरेशन किया गया है।

और ऊपर जाने के लिए येलो कलर का सीढ़ी बना है गुलाब के फूल ढेर से लगे हैं।

और नीचे टाइस का काम किया हुआ है सॉस की बोतलें रखी हुई है।

और लकड़ी का काम किया हुआ है और पाइप पे बहुत सारा लगा हुआ है ।

ऊपर जाने के लिए सीढ़ी है दरवाजा है शीशा का खिड़की है बहुत सारा--

मूर्ति का छोटा-छोटा मूर्ति मिट्टी का बना है डिजाइन से और--

छोटे-छोटे पॉट भी हैं और एक हाथी का मिट्टी का--

ने का कुर्सी है बोर्ड लगा हुआ है ये बच्चा का वहां पर--

लगा है मां के साथ फैन लगा हुआ है पानी की बोतलें रखी हुई है.

अर्जुन गेस्ट हाउस ऊपर जाने के लिए लोहे के दरवाजे खुले हुए हैं।

बगल में एक विंडो है जो शीशे का है.

कुछ बच्चे बैठे हैं कुछ लेडीज आगे की ओर जा रही है।

लाइन लगा है शीशा का विंडो बना हुआ है दरवाजा बना हुआ है.

बहुत सारे लोहे के कुर्सी लगे हुए हैं एक बच्चा पिंक कलर का स्वेटर पिंक कलर का--

टोपी पहने बैठा है एक बच्चा ब्लैक एंड येलो में गेंजी पहना है।

एक लड़का ट्राउजर पहने खड़ा है फोन में बात कर रहा--

और दो-चार लोग सामने लाइन की ओर लगे हुए हैं मास्क लगाया हुआ है।

और लकड़ी का यहां बहुत सारा लंबा लंबा विंडो बना हुआ है सामने लोहे के दरवाजे--

यहां पर लकड़ी का कुर्सी है और कुछ लोग कुछ ले रहे हैं बहुत सारा--

कुछ लड़के गिटार बजा रहे हैं सिंगिंग कर रहे हैं वहां बैठे लोग वहां एंजॉय कर रहे हैं।

क्लास में जूस लिए एक लेडी बैठी है बाल खुले और--

और लकड़ी का बहुत सारा बोट बना है डिजाइन से ग्रीन ग्रीन दिवाली बनी है पत्ते के--

और टेबल है बैठने के लिए कुर्सियां हैं ग्लास रखे हैं टिशू पेपर रखे हुए हैं.

और ऊपर में बहुत ही अच्छा तोरण लगा हुआ है फैन लगी हुई है.

लोग गाड़ी को देख रहे हैं कुछ लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं।

बगल में एक शटर खुला है ऊपर जाने के लिए सीढ़ी है बगल में एक बोर्ड लगा है ऊपर में एक बड़ासा बोर्ड लगा हुआ है।

छोटे छोटे बहोत सारे फ्लावर पॉट लगे हुए हैं जिसमें गेंद का फूल लगा हुआ है ऊपर में टायर डिजाइन का है।

पिंक ब्लू रेड कलर का नीचे कुछ लोग खड़े हैं एक लेडी खड़ी है बाम्बू--

और एक जाग है और बहुत सारा बिरयानी का चित्र बना मिक्की माउस मिनी माउस --

अ दीवाल पर स्टीकर चिपका है ड्रैगन का स्टीकर चिपका है मास्टरशेफ का स्टीकर चि --

छोटा सा पार्क लग रहा है बड़ा-बड़ा बहुत सारा पेड़ पौधा लगा हुआ है।

पौधे में फ्लावर लगा हुआ है बहुत ही सुंदर डिजाइन का--